यह एक मैदान है यह मैदान काफी बड़ा है इस मैदान के किनारे एक चार दिवारी है चार दिवारी के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग है ।

इस बिल्डिंग में बहुत से कमरे है यह बिल्डिंग काफी आकर्षक दिखाई दे रहा है यह मैदान भी काफी आकर्षक --

यहाँ पर दुकानदार भी है यहाँ पर तौलिया भी रखा हुआ है यहाँ पर अनेक ग्राहक भी हैं यहाँ से फूल खरीदकर ले जाते हैं।

इस अस्पताल के द्वार पर एक परदे हैं यहाँ एक पंखिया लगा हुआ है यहाँ एक घडी है यहाँ एक बैलून है यहाँ बहुत से आदमी हैं जो यहाँ खड़े --

यह केनरा बैंक के सामने एक ग्राउंड भी है यह ग्राउंड काफी बड़ी है|

यहाँ पर बहुत से आदमी है जो कई तरह के टोपी पहने हैं यहाँ सभी आदमी लाल कलर के पहने हुए --

एक इस्कूल है चिस्स स्कूल के गेट पार नाथ पब्लिक इस्कूल लिखा हुआ है यह हमारे लखिसाय जिल्हे में --

इस तालाब में एक कुआं भी है इस तालाब के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी है यह तालाब के किनारे काफी आकर्षक है।

इस घर के बगल में एक ग्राउंड है इस ग्राउंड में अ लोहे की गेट भी लगी हुई है यहाँ एक औरत खड़ी --